बल शीशे का दिखाई दे रहा है।

यह एक भवन की तरह दिखाई दे रहा है।

घर पर्दा से ढका हुआ है।

इसमें कुछ लोग मछली बिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं।

एक नदी भी दिखाई दे रही है।

बाहर की ओर टुनी लाइट जलती हुई नजर आ रही है।

कुछ चेयर भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक बच्चा चुपचाप बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।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

बहुत सारे लड़के लड़कियां बच्चे नजर आ रहे हैं।

आगे की ओर एक तालाब नजर आ रहा है।

एक छोटा सा मॉल दिखाई दे रहा है।

साइड में छोटे छोटे पत्थर नजर आ रहे हैं।

टेबल के ऊपर दो जग एक पानी का बोतल नजर आ रहा है।

ये कपड़े का मॉल जैसा लग रहा है।

सामने की ओर एक आदमी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है बेग लिए हुए।

बहोत सारे गाड़ी दिखाई दे रही है।

सामने एक बड़ी सी गेट दिखाई दे रही है।

आगे के ओर छोटी से गेट लोहे का दिखाई दे रहा है।

तीन साईकिल भी नजर आ रही है खड़े होते हुए।